शायद कुछ रेस्टोरेंट वेस्टॉरंट हो सकती हैये।

बु बुनने से पहले ये धान का आफर कहा जाता है इसको ये काफी कीचड़ वाला खेत है धान की रोपाई --

जो की ये बहुत ही अच्छा लग रहा है ये पेड़ का भी परछाई पानी में बन रही है जो कि काफी अच्छी दिख रही है।

उऽ मैंने पहली बार देखा ये मशीनस ऊपर में पंखे भी है देख सकते हैं।

चट टाइप कलर का है कुछ और छत पे कुछ बिन बिन होडिंग रहा है।

पानी में देख सकते है की गंगा में नाहा रहे है यहां से पानी उठा रहे हैं।

येस दांत का अस्पताल राजमार्ग पथ चौक बाजार डॉक्टर मनोज कुमार शाह के द्वारा ।